ये एक पेड़ से हैं इसमे और एक रूट सा है जिसमे नारी उम्म आ नारियल का पेड़ भी कह सकते हैं लेकिन तरह एक पेड़ हैं।

इसने एक अ नम नम ड्रेस रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है और पीछे भी एक लड़कियो वाली रेड ड्रेस टंगी हुई है जोकि बहुत ही प्यारी लग रही हैं।

ये एक कपड़ो की दुकान का के सामने का तस्वीर हैं जिसमे लड़कियों के ए ऊपर के हिस्से का मतलब कपड़े हैं और जोकि लाल गुलाबी हरे नीले ब्लैक एंड येलोज हैं।